ईट को तैयार किया गया है और सभी लोग यहां --

दो टब में रखी हुई है और इधर एक जैसे कुछ रखे हुए हैं।

और इधर एक लाइन की खंभे भी गड़े --

तो भाई ये एक कंप्यूटर ले के बैठे हुए हैं और दो दादी और एक दादाजी एक चेयर पर बैठे हुए हैं।

बस स्टैंड है और यहाँ पे बहुत सारी बस को खड़ी की गई है और --

और इधर एक प्लेस्टिक की जैसी भी कुछ रखी हुई है और ये एक ग्लास पैनल भी --

दो लेडिस भी खड़ी हुई है और यहां पे वो --